यहाँ पर ऊपर साइड बेड रखी दिखाई दे रही हैं |

वॉटर पार्क दिखाई दे रहा है जहाँ पर स्लाइडिंग की --

ये किराने की दुकान दिखाई दे रही है जो बाहर डिब्बों में कुछ सामान रखा दिखाई दे रहा है कुछ चॉकलेटे रखी दिखाई दे रही है।

यहाँ दो लोग दिखाई दे रहे है जो इ-रिक्सा के पास अपनी फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहे है। इस इ-रिक्सा का कलर ग्रीन कलर का है।

ये मुझे एक अअअ अन कुछ सा बिल्डिंग दिखाई दे रही है |

वह अपनी स्कूल के सामने फोटो क्लिक करते हुए दिखाई दे रही है |

वो पैसे का कौलकुलेट करते दिखाई दे रहा है |

और यहाँ पर सब्जियां उसके टेबल पे एएए बिछी हुई दिखाई दे रही है केले टंगे दिखाई दे रहे हैं |

ये घर नजर आ रहा है। जहा पर ये दो लोहे की गेट दिखाई दे रहा है।

ये एक गैरेज दिखाई दे रहे है जहाँ पर बोहोत सारी गाड़ीया खड़ी दिखाई दे रही है और बोहोत सी गंदी गाड़िया दिखाई दे रहे है।

खेत के बीच में एक उम पोस्टर सा टंगा दिखाई दे रहा है और खेत के उम सामने जस्ट रोड दिखाई दे रहा है |

जो सांचों से कवरिंग किया गया है यहाँ पर व्हाइट कलर का एक गेट दिखाई दे रहा है।

प्लास्टर करते दिखाई दे रहे है और कुछ मजदुर यहाँ आपको पाइप लेके खड़े है कुछ ख-खड़े दिखाई दे रहे है।

दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे है। यब रेड कलर की टी अ चेयर दिखाई दे रही है।